एक दुकान दिखाई दे रही है और एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सी--

और टायर बने हुए हैं और दुकान को काफी अच्छा सजाया हुआ है यहां पर।

यह देखिए एक्वेरियम नजर आ रहा है एक्वेरियम दिख रहा है यह बड़े बड़े जहां पर मछली रखते हैं ना कांच के शोपीस दिख रहे हैं।